हमें एक ऑटो ई-रिक्शा दिख रहा है।

घर की खिड़कियाँ भी लगी हुई हैं और उस पर दो मंजल छत भी लगी हुई है।

और ट्रैक्टर भी चल रहा है। मारुती कार भी उसमें खड़ी हुई हैं।

शोरूम के ऊपर लिखा है मारुती सुजूकी एरीना ।